पीछे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई होंगी और स्टेज में कुछ कुछ डेल हुए होंगी स्टेज में एक रूमाल्स भी कुछ लग रहा है जो --

इसके ऊपर जो डाला हुआ है उसका कलर व्हाइट है लड़की के बालों का कलर ब्लैक है और पार्लर में कई सारी लाइट्स लगी हुई होगी ऊपर एक फैन भी लगा हुआ है उसके बगल में ऐसी भी लगी हुई है

फूल है फूलों के सामने एक आदमी खड़ा है उसके शर्ट का कलर व्हाइट है उसकी पेंट का कलर स्लेटी है महसूस पहने हुए हैं नीचे थोड़ी सी घास है बगल में उसके पानी है

यहाँ पे पूल है इट्स काफी सारि गाड़िया है और आगे एक दो बिल्डिंग है छोटे छोटे--

ये जिम है ये जो लड़का सामने खड़ा हुआ है ये बॉडी बनाये हुए है इसका टी-शर्ट का ऑरेंज है पीछे जिम की सामान रखी जायेगी पीछे और भी लोग जिम कर रहे है।

और पि ब्लू कलर का पर्दा है दिवार पिंक कलर की है पोस्टर भी लगे हुए है वाइट कलर की शू है।

पीछे काफी सारे पेड़ भी लगे हुए है पेड़ों के पीछे खुब बड़ा सा पहाड़ भी है |और में थोड़ा सा पेड़ो के आगे पानी भी है |